यह एक वॉटर फॉल का फोटो है जहाँ निचे कुछ लोग नहा रहे है और ऊपर से पहाड़ी के ऊपर से पानी बह रहा है और यहां बहुत सारे वृक्ष भी लगे हुए है।

एक वॉटरफाल है जिसके यहां पर कुछ लोग खड़े हुए है और यहां एक डस्टबिन रखा हुआ है और एक पेटी जैसा कुछ रखा हुआ है वहां।

और यहाँ एक व्यक्ति ही बलुन पर बैठा हुआ है| यह बलून्स ब्लू कलर का है और व्यक्ति है| वो लाल कलर की टी-शर्ट में दिखाई दे रहा है।

ये एक मंदिर का फोटो है और ये मंदिर आधा राइट साइड से बनता हुआ लेफ्ट साइड से भी बन रहा है और यहां कुछ अ मोटर साइकल खड़ी हुई है और एक व्यक्ति यहां से चल कर के जा रहा है।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

एक ब्यूटीफूल वॉटर फोल है जहा पानी बह रहा है और इस पानी का कलर सफेद है एक दम दुध जैसा दिखाई दे रहा है।

और नीचे भी कुछ इस तहर ही से लिखा हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए है और यहाँ कुछ कैलेंडर भी टंगे हुए हैं।

यहाँ पर हमें एक मगर का फोटो दिखाई दे रहा है जो पानी के तालाब के किनारे पर डला हुआ है और यहाँ पर कुछ पानी भरा हुआ है।